और यहाँ पर काफी हरियाली है और काफी बड़ा पोन्ड है और उसके आस पास काफी बड़ा जंगल है इस वहाँ पर पेड़ पोधै और आदि --